मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
नए विषयों के साथ नए प्रेरक उदाहरणों के साथ नएनए संदेशों को समेटते हुए एक बार फिर मैं आपसे मन की बात करने आया हूँ
जानते हैं इस बार मुझे सबसे ज्यादा चिट्ठियाँ और संदेश किस विषय को लेकर मिली है ये विषय ऐसा है जो इतिहास वर्तमान और भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ है
मैं बात कर रहा हूँ देश को मिले नए प्रधानमंत्री संग्रहालय की
इस 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयन्ती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोकार्पण हुआ है
इसे देश के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है
एक श्रोता हैं श्रीमान सार्थक जी सार्थक जी गुरुग्राम में रहते हैं और पहला मौका मिलते ही वो प्रधानमंत्री संग्रहालय देख आए हैं
सार्थक जी ने नामो App पर जो संदेश मुझे लिखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है
उन्होंने लिखा है कि वो बरसों से न्यूज़ चैनल देखते हैं अखबार पढ़ते हैं सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी जनरल नाउलेज काफी अच्छी होगी लेकिन जब वे पीएम संग्रहालय गए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने देश और देश का नेतृत्व करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं हैं
उन्होंने पीएम संग्रहालय की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में लिखा है जो उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाने वाली थी जैसे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का वो चरखा देखकर बहुत खुशी हुई जो उन्हें ससुराल से उपहार में मिला था
उन्होंने शस्त्री जी की पासबुक भी देखी और यह भी देखा कि उनके पास कितनी कम बचत थी
सार्थक जी ने लिखा है कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि मोरारजी भाई देसाई स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले गुजरात में डेप्यूटी कलेक्टर थे
प्रशासनिक सेवा में उनका एक लंबा कैरियर रहा था
सार्थक जी चौधरी चरण सिंह जी के विषय में वो लिखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि जमींदारी उन्मूलन के क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था
इनता ही नहीं वे आगे लिखते हैं जब लैंड रिफॉर्म के विषय में वहाँ मैंने देखा कि श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव जी लैंड रिफॉर्म के काम में बहुत गहरी रूचि लेते थे
सार्थक जी को भी इस म्यूजियम में आकर ही पता चला कि चंद्रशेखर जी ने 4 हज़ार किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर ऐतिहासिक भारत यात्रा की थी
उन्होंने जब संग्रहालय में उन चीज़ों को देखा जो अटल जी उपयोग करते थे उनके भाषणों को सुना तो वो गर्व से भर उठे थे
सार्थक जी ने ये भी बताया कि इस संग्रहालय में महात्मा गाँधी सरदार पटेल डॉ० अम्बेडकर जय प्रकाश नारायण और हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बहुत ही रोचक जानकारियाँ हैं
साथियो देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है
देश के लिए यह गौरव की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जनआंदोलन का रूप ले रहा है
इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है
वैसे साथियो जब म्यूजियम के बारे में आपसे इतनी बातें हो रही हैं तो मेरा मन किया कि मैं भी आपसे कुछ सवाल करूं
देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज जनरल नाउलेज क्या कहती है आपको कितनी जानकारी है
मेरे नौजवान साथियो आप तैयार हैं कागज़ कलम हाथ में ले लिया अभी मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूँ आप उनके उत्तर नामो App या सोशल मीडिया पर म्यूजियमक्विज के साथ शेयर कर सकते हैं और जरुर करें
मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सभी सवालों का जवाब ज़रूर दें
इससे देशभर के लोगों में म्यूजियम को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी
क्या आप जानते हैं कि देश के किस शहर में एक प्रसिद्ध रेल म्यूजियम है जहाँ पिछले 45 वषों से लोगो को भारतीय रेल की विरासत देखने का मौका मिल रहा है
मैं आपको एक और क्लू देता हूं
आप यहाँ फेयरी क्वीन फ़ेयरी क्वीन सलून ओएफ प्रिंस ओएफ वेल्स सलून ऑफ़ प्रिन्स ऑफ़ वेल्स से लेकर फायरलेस स्टीम लोकोमोटिव फ़ायरलेस स्टीम लोकोमोटिव ये भी देख सकते हैं
क्या आप जानते हैं कि मुंबई में वो कौन सा म्यूजियम है जहाँ हमें बहुत ही रोचक तरीके से करेंसी का इवोल्यूशन देखने को मिलता है यहाँ ईसा पूर्व छठी शताब्दी के सिक्के मौजूद हैं तो दूसरी तरफ इमोनी भी मौजूद है
तीसरा सवाल विरासतएखालसा इस म्यूजियम से जुड़ा है
क्या आप जानते हैं ये म्यूजियम पंजाब के किस शहर में मौजूद है पतंगबाजी में तो आप सबको बहुत आनंद आता ही होगा अगला सवाल इसी से जुड़ा है
देश का एकमात्र किते म्यूजियम कहाँ है आइए मैं आपको एक क्लू देता हूं यहाँ जो सबसे बड़ी पतंग रखी है उसका आकार 22 गुणा 16 फीट है
कुछ ध्यान आया नहीं तो यहीं एक और चीज़ बताता हूँ यह जिस शहर में है उसका बापू से विशेष नाता रहा है
बचपन में डाक टिकटों के संग्रह का शौक किसे नहीं होता लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में डाक टिकट से जुड़ा नेशनल म्यूजियम कहाँ है मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ
गुलशन महल नाम की इमारत में कौन सा म्यूजियम है आपके लिए क्लू ये है कि इस म्यूजियम में आप फिल्म के डायरेक्टर भी बन सकते हैं कैमरा एडिटिंग की बारीकियों को भी देख सकते हैं
अच्छा क्या आप ऐसे किसी म्यूजियम के बारे में जानते हैं जो भारत की टेक्सटाइल से जुड़ी विरासत को सेलिब्रेट करता है
इस म्यूजियम में मिनिएचर पेंटिंग्स मिनियेचर पेंटिंग्स जैना मैनुस्क्रिप्ट्स जैन मैनुस्क्रिप्ट्स स्कल्पचर्स स्कल्पचर बहुत कुछ है
ये अपने यूनिक डिस्प्ले के लिए भी जाना जाता है
साथियो टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपके लिए इनके उत्तर खोजना बहुत आसान है
ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछे ताकि हमारी नई पीढ़ी में जिज्ञासा बढ़े वो इनके बारे में और पढ़ें इन्हें देखने जाएँ
अब तो म्यूजियम्स के महत्व की वजह से कई लोग खुद आगे आकर म्यूजियम्स के लिए काफ़ी दान भी कर रहे हैं
बहुत से लोग अपने पुराने कलेक्शन को ऐतिहासिक चीज़ों को भी म्यूजियम्स को दान कर रहे हैं
आप जब ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप एक सांस्कृतिक पूँजी को पूरे समाज के साथ साझा करते हैं
भारत में भी लोग अब इसके लिए आगे आ रहे हैं
मैं ऐसे सभी निजी प्रयासों की भी सराहना करता हूँ
आज बदलते हुए समय में और कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से संग्रहालयों में नए तौरतरीके अपनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है
म्यूजियम्स में डिजिटाइजेशन पर भी फोकस बढ़ा है
आप सब जानते हैं कि 18 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाएगा
इसे देखते हुए अपने युवा साथियों के लिए मेरे पास एक आईडीईए है
क्यों न आने वाली छुट्टियों में आप अपने दोस्तों की मंडली के साथ किसी स्थानीय म्यूजियम को देखने जाएं
आप अपना अनुभव म्यूजियममोरीज के साथ ज़रूर साझा करें
आपके ऐसा करने से दूसरों के मन में भी संग्रहालयों के लेकर जिज्ञासा जगेगी
मेरे प्यारे देशवासियो आप अपने जीवन में बहुत से संकल्प लेते होंगे उन्हें पूरा करने के लिए परिश्रम भी करते होंगे
साथियो लेकिन हाल ही में मुझे ऐसे संकल्प के बारे में पता चला जो वाकई बहुत अलग था बहुत अनोखा था
इसलिए मैंने सोचा कि इसे मन की बात के श्रोताओं को ज़रूर शेयर करूं
साथियो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये संकल्प लेकर निकले कि वो आज दिन भर पूरा शहर घूमेगा और एक भी पैसे का लेनदेन कैश में नहीं करेगा नकद में नहीं करेगा है ना ये दिलचस्प संकल्प
दिल्ली की दो बेटियाँ सागरिका और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया
सागरिका और प्रेक्षा दिल्ली में जहाँ भी गईं उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गयी
उपी क्यूआर कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी
यहाँ तक कि स्ट्रीट फूड और रेहड़ीपटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ओनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिली
साथियो कोई सोच सकता है कि दिल्ली है मेट्रो सिटी है वहां ये सब होना आसान है
लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उपी का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है
एक मेसेज मुझे गाजियाबाद से आनंदिता त्रिपाठी का भी मिला है
आनंदिता पिछले सप्ताह अपने पति के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गई थीं
उन्होंने असम से लेकर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझे बताया
आपको भी ये जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूरदराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी
जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी वहां भी अब उपी से पेमेंट की सुविधा मौजूद है
सागरिका प्रेक्षा और आनंदिता के अनुभवों को देखते हुए मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें जरुर करें
साथियो पिछले कुछ सालों में भीम उपी तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है
अब तो छोटेछोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग उपी से ही लेनदेन कर रहे हैं
डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है
गलीनुक्कड़ की छोटीछोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्वाइस देना आसान हो गया है
उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती
आप भी उपी की सुविधा को रोज़मर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे
कहीं भी गए कैश ले जाने का बैंक जाने का एटीएम खोजने का झंझट ही ख़त्म
मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटेछोटे ओनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है
इस समय हमारे देश में करीब 20 हज़ार करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हर दिन हो रहे हैं
पिछले मार्च के महीने में तो उपी ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया
इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है
अब तो देश में फिनटेक से जुड़े कई नये स्टार्टअप्स भी आगे बढ़ रहे हैं
मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस ताकत से जुड़े अनुभव हैं तो उन्हें साझा करिए
आपके अनुभव दूसरे कई और देशवासियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है
टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा काम किया है
ये काम है दिव्यांग साथियों की असाधारण क्षमताओं का लाभ देश और दुनिया को दिलाना
हमारे दिव्यांग भाईबहन क्या कर सकते हैं ये हमने टोक्यो पैरालम्पिक्स में देखा है
खेलों की तरह ही आर्ट्स एकेडमिक्स और दूसरे कई क्षेत्रों में दिव्यांग साथी कमाल कर रहे हैं लेकिन जब इन साथियों को टेक्नोलॉजी की ताकत मिल जाती है तो ये और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते हैं
इसीलिए देश आजकल लगातार संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है
देश में ऐसे कई स्टार्टअप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेरणादायी काम कर रहे हैं
ऐसी ही एक संस्था है वॉइस ओएफ स्पेशलिएबल्ड पियोपल ये संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसरों को प्रोमोट कर रही है
जो दिव्यांग कलाकार हैं उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुआत की गई है
वॉइस ओएफ स्पेशली एबल्ड पियोपल के इन कलाकारों की पेंटिंग्स की डिजिटल आर्ट गैलरी तैयार की है
दिव्यांग साथी किस तरह असाधारण प्रतिभाओं के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारण क्षमताएं होती हैं ये आर्ट गैलरी इसका एक उदाहरण है
दिव्यांग साथियों के जीवन में कैसी चुनौतियाँ होती हैं उनसे निकलकर वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं ऐसे कई विषयों को इन पेंटिंग्स में आप महसूस कर सकते हैं
आप भी अगर किसी दिव्यांग साथी को जानते हैं उनके टैलेंट को जानते हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं
जो दिव्यांग साथी हैं वो भी इस तरह के प्रयासों से जरुर जुड़ें
मेरे प्यारे देशवासियो देश के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है
बढ़ती हुई ये गर्मी पानी बचाने की हमारी ज़िम्मेदारी को भी उतना ही बढ़ा देती है
हो सकता है कि आप अभी जहां हों वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो
लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं जिनके लिए पानी की एकएक बूंद अमृत के समान होती है
साथियो इस समय आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण भी एक है
अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाये जायेंगे
आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है
वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे
मैं आप सभी से और खासकर युवाओं से चाहूँगा कि वो इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठायें
अगर आपके क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा कोई इतिहास है किसी सेनानी की स्मृति है तो उसे भी अमृत सरोवर से जोड़ सकते हैं
वैसे मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि अमृत सरोवर का संकल्प लेने के बाद कई स्थलों पर इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है
मुझे यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई के बारे में जानकारी मिली है
वहां पर ग्राम सभा की भूमि पर एक तालाब था लेकिन वो गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा हुआ था
पिछले कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करके स्थानीय लोगों की मदद से स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का कायाकल्प हो गया है
अब उस सरोवर के किनारे रिटेनिंग वॉल चारदीवारी फूड कोर्ट फव्वारे और लाइटनिंग भी न जाने क्याक्या व्यवस्थायें की गयी है
मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत को गांव को लोगों को वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुतबहुत बधाई देता हूं
साथियो पानी की उपलब्धता और पानी की क़िल्लत ये किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं
आपने भी गौर किया होगा कि मन की बात में मैं स्वच्छता जैसे विषयों के साथ ही बारबार जल संरक्षण की बात जरुर करता हूँ
हमारे तो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है
पानियम् परमम् लोके जीवानाम् जीवनम् समृतम्
अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना ज़ोर दिया
वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को तालाब सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है
वाल्मीकि रामायण में जल स्त्रोतों को जोड़ने पर जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है
इसी तरह इतिहास के स्टूडेंट्स जानते होंगे सिन्धुसरस्वती और हडप्पा सभ्यता के दौरान भी भारत में पानी को लेकर कितनी विकसित इंजिनियरिंग होती थी
प्राचीन काल में कई शहर में जलस्त्रोतों का आपस में इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता था और ये वो समय था जब जनसंख्या उतनी नहीं थी प्राकृतिक संसाधनों की क़िल्लत भी नहीं थी एक प्रकार से विपुलता थी फिर भी जल संरक्षण को लेकर तब जागरूकता बहुत ज्यादा थी
लेकिन आज स्थिति इसके उलट है
मेरा आप सभी से आग्रह है आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों कुँओं और सरोवरों के बारे में जानें
अमृत सरोवर अभियान की वजह से जल संरक्षण के साथसाथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी
इससे शहरों में मोहल्लों में स्थानीय पर्यटन के स्थल भी विकसित होंगे लोगों को घूमनेफिरने की भी एक जगह मिलेगी
साथियो जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है
इसमें पूरे समाज की ज़िम्मेदारी होती है
इसके लिए सदियों से अलगअलग समाज अलगअलग प्रयास लगातार करते आये हैं
जैसे कि कच्छ के रण की एक जनजाति मालधारी जल संरक्षण के लिए वृदास नाम का तरीका इस्तेमाल करती है
इसके तहत छोटे कुएं बनाए जाते हैं और उसके बचाव के लिए आसपास पेड़पौधे लगाए जाते हैं
इसी तरह मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने अपनी एक ऐतिहासिक परम्परा हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया
इस परम्परा के अंतर्गत इस जनजाति के लोग पानी से जुड़ी समस्याओं का उपाय ढूँढने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं
हलमा परम्परा से मिले सुझावों की वजह से इस क्षेत्र में पानी का संकट कम हुआ है और भूजल स्तर भी बढ़ रहा है
साथियो ऐसी ही कर्तव्य का भाव अगर सबके मन में आ जाए तो जल संकट से जुड़ी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान हो सकता है
आइये आजादी के अमृत महोत्सव में हम जलसंरक्षण और जीवनसंरक्षण का संकल्प लें
हम बूंदबूंद जल बचाएंगे और हर एक जीवन बचाएंगे
मेरे प्यारे देशवासियो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपने युवा दोस्तों से स्टूडेंट्स से परीक्षा पर चर्चा की थी
इस चर्चा के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें एक्साम में गणित से डर लगता है
इसी तरह की बात कई विद्यार्थियों ने मुझे अपने संदेश में भी भेजी थी
उस समय ही मैंने ये तय किया था कि गणितmathematics पर मैं इस बार के मन की बात में जरुर चर्चा करुंगा
साथियो गणित तो ऐसा विषय है जिसे लेकर हम भारतीयों को सबसे ज्यादा सहज होना चाहिए
आखिर गणित को लेकर पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है
शून्य यानी जीरो की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने खूब सुना भी होगा
अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि अगर ज़ेरो की खोज न होती तो शायद हम दुनिया की इतनी वैज्ञानिक प्रगति भी न देख पाते
कैल्कुलस से लेकर कम्प्यूटर्स तक ये सारे वैज्ञानिक आविष्कार ज़ेरो पर ही तो आधारित हैं
भारत के गणितज्ञों और विद्वानों ने यहाँ तक लिखा है कि
यत किंचित वस्तु तत सर्वं गणितेन बिना नहि
अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ गणित पर ही आधारित है
आप विज्ञान की पढ़ाई को याद करिए तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा
विज्ञान का हर प्रिंसिपल एक मैथमेटिकल फॉर्मुला में ही तो व्यक्त किया जाता है
न्यूटन के लॉस हों आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन ब्रह्मांड से जुड़ा सारा विज्ञान एक गणित ही तो है
अब तो वैज्ञानिक भी थियोरी ओएफ एवरीथिंग की भी चर्चा करते हैं यानी एक ऐसा सिंगल फॉर्मुला जिससे ब्रह्मांड की हर चीज को अभिव्यक्त किया जा सके
गणित के सहारे वैज्ञानिक समझ के इतने विस्तार की कल्पना हमारे ऋषियों ने हमेशा से की है
हमने अगर शून्य का अविष्कार किया तो साथ ही अनंत यानि इन्फिनाइट को भी एक्सप्रेस किया है
सामान्य बोलचाल में जब हम संख्याओं और नंबर्स की बात करते हैं तो मिलियन बिलियन और ट्रिलियन तक बोलते और सोचते हैं लेकिन वेदों में और भारतीय गणित में ये गणना बहुत आगे तक जाती है
हमारे यहाँ एक बहुत पुराना श्लोक प्रचलित है
एकं दशं शतं चैव सहस्रम् अयुतं तथा
लक्षं च नियुतं चैव कोटि अर्बुदम् एव च
वृन्दं खर्वो निखर्व च शंख पद्म च सागर
अन्त्यं मध्यं परार्ध च दश वृद्ध्या यथा क्रमम्
इस श्लोक में संख्याओं का आर्डर बताया गया है
जैसे कि
एक दस सौ हज़ार और अयुत
लाख नियुत और कोटि यानी करोड़
इसी तरह ये संख्या जाती है शंख पद्म और सागर तक
एक सागर का अर्थ होता है कि 10 की पॉवर 57
यही नहीं इसके आगे भी ओघ और महोघ जैसी संख्याएँ होती हैं
एक महोघ होता है 10 की पॉवर 62 के बराबर यानी एक के आगे 62 शून्य सिक्सटी त्वो ज़ेरो
हम इतनी बड़ी संख्या की कल्पना भी दिमाग में करते हैं तो मुश्किल होती है लेकिन भारतीय गणित में इनका प्रयोग हजारों सालों से होता आ रहा है
अभी कुछ दिन पहले मुझसे इंटेल कंपनी के सीईओ मिले थे
उन्होंने मुझे एक पेंटिंग दी थी उसमें भी वामन अवतार के जरिये गणना या माप की ऐसी ही एक भारतीय पद्धति का चित्रण किया गया था
इंटेल का नाम आया तो कम्प्यूटर आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा
कम्प्यूटर की भाषा में आपने बाइनरी सिस्टम के बारे में भी सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में आचार्य पिंगला जैसे ऋषि हुए थे जिन्होंने बाइनरी की कल्पना की थी
इसी तरह आर्यभट्ट से लेकर रामानुजन जैसे गणितज्ञों तक गणित के कितने ही सिद्धांतों पर हमारे यहाँ काम हुआ है
साथियो हम भारतीयों के लिए गणित कभी मुश्किल विषय नहीं रहा इसका एक बड़ा कारण हमारी वैदिक गणित भी है
आधुनिक काल में वैदिक गणित का श्रेय जाता है श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को
उन्होंने कैल्कुलेशन के प्राचीन तरीकों को रिवाइव किया और उसे वैदिक गणित नाम दिया
वैदिक गणित की सबसे खास बात ये थी कि इसके जरिए आप कठिन से कठिन गणनाएँ पलक झपकते ही मन में ही कर सकते हैं
आजकल तो सोशल मीडिया पर वैदिक गणित सीखने और सिखाने वाले ऐसे कई युवाओं के वीडियोस भी आपने देखे होंगे
साथियो आज मन की बात में वैदिक गणित सिखाने वाले एक ऐसे ही साथी हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं
ये साथी हैं कोलकाता के गौरव टेकरीवाल जी
और वो पिछले दोढाई दशक से वैदिक मैथमेटिक्स इस मूवमेंट को बड़े समर्पित भाव से आगे बढ़ा रहे हैं
आईये उनसे ही कुछ बातें करते हैं
गौरव जी नमस्ते
नमस्ते सर
मैंने सुना है कि आप वेदिक मैथ्स के लिए काफी रूचि रखते हैं बहुत कुछ करते हैं
तो पहले तो मैं आपके विषय में कुछ जानना चाहूँगा और बाद में इस विषय में आपकी रूचि कैसे हैं जरा मुझे बताइये
सर जब मैं बीस साल पहले जब बिजनेस स्कूल के लिए एप्ली कर रहा था तो उसकी कॉम्पिटिटिव एक्साम होती थी जिसका नाम है CAT
उसमें बहुत सारे गणित के सवाल आते थे
जिसको कम समय में करना पड़ता था
तो मेरी माँ ने मुझे एक बुक लाकर दिया जिसका नाम था वैदिक गणित
स्वामी श्री भारतीकृष्णा तीर्थ जी महाराज ने वो बुक लिखी थी
और उसमे उन्होंने 16 सूत्र दिए थे
जिसमे गणित बहुत ही सरल और बहुत ही तेज हो जाता था
जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली और फिर मेरी रूचि जागृत हुई मैथमेटिक्स में
मुझे समझ में आया कि ये सब्जेक्ट जो भारत की देन है जो हमारी धरोहर है उसको विश्व के कोनेकोने में पहुँचाया जा सकता है
तब से मैंने इसको एक मिशन बनाया कि वैदिक गणित को विश्व के कोनेकोने में पहुंचाया जाये
क्योंकि गणित की डर हर जन को सताती है
और वैदिक गणित से सरल और क्या हो सकता है
गौरव जी कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं
मुझे आज हो गए करीबन 20 साल सर मैं उसमें ही लगा हुआ हूँ
और अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं क्याक्या प्रयोग करते हैं कैसे जाते हैं लोगों के पास
हम लोग स्कूल्स में जाते हैं हम लोग ओनलाइन शिक्षा देते हैं
हमारी संस्था का नाम है वेदिक मैथ्स फोरम India
उस संस्था के तहत हम लोग इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे वेदिक मैथ्स पढ़ाते हैं सर
गौरव जी आप तो जानते है मैं लगातार बच्चों के साथ बातचीत करना पसंद भी करता हूँ और मैं अवसर ढूंढता रहता हूँ
और एक्साम वारियर से तो मैं बिल्कुल एक प्रकार से मैंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया है और मेरा भी अनुभव है कि ज्यादातर जब बच्चों से बात करता हूँ तो गणित का नाम सुनते ही वो भाग जाते हैं और तो मेरी कोशिश यही है कि ये बिना कारण जो एक हव्वा पैदा हुआ है उसको निकाला जाये ये डर निकाला जाये और छोटीछोटी तकनीक जो परम्परा से है जो कि भारत गणित के विषय में कोई नया नहीं है
शायद दुनिया में पुरातन परम्पराओं में भारत के पास गणित की परम्परा रही है तो एक्साम वारियर को डर निकालना है तो आप क्या कहेंगे उनको
सर ये तो सबसे ज्यादा उपयोगी है बच्चों के लिए क्योंकि एक्साम का जो डर होता है जो हव्वा हो गया है हर घर में
एक्साम के लिए बच्चे ट्यूशन लेते हैं पेरेंट्स परेशान रहते हैं
टीचर भी परेशान होते हैं
तो वैदिक गणित से ये सब छूमंतर हो जाता है
इस साधारण गणित की अपेक्षा में वैदिक गणित पंद्रह सौ परसेंट तेज है और इससे बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और दिमाग भी तेजी से चलता है
जैसे हम लोग वैदिक गणित के साथ योग भी इंट्रोड्यूस किये हैं
जिससे कि बच्चे अगर चाहे तो आँख बंद करके भी कैल्कुलेशन कर सकते हैं वैदिक गणित पद्दति के द्वारा
वैसे ध्यान की जो परंपरा है उसमें भी इस प्रकार से गणित करना वो भी ध्यान का एक प्राइमरी कोर्स भी होता है
राइट सिर
चलिए गौरव जी बहुत अच्छा लगा मुझे और आपने मिशन मोडे में इस काम को उठाया है और विशेषकर की आपकी माता जी ने एक अच्छे गुरु के रूप में आपको ये रास्ते पर ले गई
और आज आप लाखों बच्चों को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं
मेरी तरफ से आपको बहुतबहुत शुभकामनाएं
शुक्रिया सर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर कि वैदिक गणित को आपने महत्व दिया और मुझे चुना सर तो वे एआरई वेरी थैंकफुल
बहुत धन्यवाद
नमस्ते सर
साथियो गौरव जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वैदिक गणित कैसे गणित को मुश्किल से मज़ेदार बना सकता है
यही नहीं वैदिक गणित से आप बड़ीबड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर सकते हैं
मैं चाहूँगा सभी मातापिता अपने बच्चों को वैदिक गणित जरुर सिखाएँ
इससे उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही उनके ब्रेन की एनालिटिकल पॉवर भी बढ़ेगी और हाँ गणित को लेकर कुछ बच्चों में जो भी थोड़ा बहुत डर होता है वो डर भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में आज म्यूजियम से लेकर माथ तक कई ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा हुई
ये सब विषय आप लोगों के सुझावों से ही मन की बात का हिस्सा बन जाते हैं
मुझे आप इसी तरह आगे भी अपने सुझाव नामो App और माइगोव के जरिए भेजते रहिए
आने वाले दिनों में देश में ईद का त्योहार भी आने वाला है
3 मई को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाएगी
कुछ दिन बाद ही वैशाख बुध पूर्णिमा का पर्व भी आएगा
ये सभी त्योहार संयम पवित्रता दान और सौहार्द के पर्व हैं
आप सभी को इन पर्वों की अग्रिम शुभकामनायें
इन पर्वों को खूब उल्लास और सौहार्द के साथ मनाइए
इन सबके बीच आपको कोरोना से भी सतर्क रहना है
मास्क लगाना नियमित अंतराल पर हाथ धुलते रहना बचाव के लिए जो भी जरुरी उपाय हैं आप उनका पालन करते रहें
अगली बार मन की बात में हम फिर मिलेंगे और आपके भेजे गए कुछ और नये विषयों पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए विदा लेते हैं
बहुत बहुत धन्यवाद